हाथ में कुछ डाक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं और कुछ आदमी खाली हाथ भी नजर आ रहे हैं और कुछ आदमी लैपटॉप पर--

लेकिन मैं इतना देख पा रही हूं कि ये सामने एक काउंटर है काउंटर पे कुछ पेपा --

कुछ बच्चे यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं और एक कुर्सी भी डली है।

इधर साइड में कोन पे हेलमेट लगाकर बाइक भी पार्क की गई है और सामने एक कार भी पार्क है।

रखी हुई है। सामने कुछ पोस्टर नजर आ रहे हैं मुझे क्लास रूम के।

जैसे ये यहां देख पा रही हूं ये एक सैलून है बॉय सैलून --